यहां पर मुझे एक दुकान दिख रहा है।

और मुझे बहोत सारे ब्लैक कलर के चिअर दिख रहे है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा हैं।

यहाँ पर मुझे एक सफेद रूम दिख रहा हैं।

मुझे एक येलो टाइप का दीवार पर कुछ लदा हुआ दिख रहा है।

मुझे ए_सी दिख रहे हैं और दीवाल पर पंखे भी दिख रहे हैं।

और मुझे सूखी घास दिख रही है।

जो सफेद कलर का है और चीयड़--

मुझे केले अनारस और अनार दिख रहे हैं और नारंगी दिख रहे हैं।

हां पर मुझे एक बड़ा सा रूम दिख रहा है।

और मुझे बहुत सारी स्कूटीयां दिख रही है।

और इस बिल्डिंग का बड़ा सा एंट्रेंस दिख रहा है और मुझे एक गेट दिख रही है जो ब्लैक और वाइट कलर की है।

और दुकान के अंदर मुझे सफेद रंग का पंखा नजर आ रहा है।

मुझे गोल्डन काउंटर नजर आ रहा है।

पर मुझे एक लंबा सा जगह नजर आ रहा है।

और मुझे एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है।

और बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।